साइकिल हई मोटर साइकिल हई दुकान हई।

आदमी सब हई एम्मे घर बनइ छई एने सीढ़ी लागल हई।

मेला में गाछी सब है गाछी के पत्ता है हरियर-हरियर पत्ता --

मुड़ी में बांधले हेय मोबाइल जेबी में धेएले हेय मुड़ी में गमछा बांधले हेय लाल गम --

मरद सब हय बइठल हय पंडाल --

इमें लड़का खड़ा भेल हई लाल टी-शर्ट पेहनले हई टी-शर्ट पे करिया लिखल हई।

गाछी के पत्ता सब हई हरियर-हरियर हई चार चक्का के --

लाल हई फुलोना सब टांगल हई फुलोना लाल हई चर हई।